दिन का टाइमिंग है यह पार्क है पार्क में चिल्ड्रेन्स बच्चे लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं एक बच्चा एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहा है।

चारों तरफ बच्चे लोग खेल रहे है टॉवर लगा हुआ है एण्ड उसके ऑउट साईड में बहुत सारे झाड़ पेड़ पौधे लगे हुए है आसमान नीला नजर आ रहा है।

ऑरेंज स्काई ब्लू कलर की बिल्डिंगे इससे बनी हुई है।